उसके आगे वाली तरफ दो गमले पड़े हैं सबज रंग के और उसमें बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं इधर ब्राउन रंग की--

और एक आदमी खड़ा है जिसने अपने दोनों हाथ तख्ते के ऊपर रखे हुए है।

जिसने जिन्होंने एक फ्रॉक पहना हुआ है और एक ने पेंट शर्ट पहनी हुई है पीछे भी बहुत सारे किस्म के कपड़े पड़े हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का और एक औरत खड़े हैं।

दूसरी तरफ पीछे सीढ़ियां है और सीढ़ियां के ऊपर मोटरसाइकिल की तस्वीर है।

शर्ट है और नीले रंग की पैंट है इधर एक लड़का है जिसकी सफ़ेद रंग की शर्ट है और नीले रंग की पेंट है।

सबके ऊपर स्पेलिंग अंग्रेजी में लिखी हुई है।

सफेद रंग की शर्ट है इधर बस के आगे समान पड़ा है जिसमें पानी वाली बोतल भी है और बैग ।

ये एक बवची खाने के का मंजर है जहां पे हम अलग-अलग किस्म के मीठे खाने बन रहे हैं।

इस तरफ एक चिमटा पड़ा हुआ है और चम्मच एक डिश है सफेद रंग की उसमें चम्मच पड़े हैं उसके साथ पीले रंग का कस्टर्ड --

ये एक पेट्रोल पंप का मनैजर है जिसके ऊपर बहुत सारी एजेंसियां बनी हुई है और।

ये एक फूलों की दुकान है जहां किस्म के फूल पड़े हुए है।

और उसकी एक टांग नजर आ रही है जिसे भूरे रंग के शूज पहना हुआ है।

और नीचे जमीन पर चार पांच--

अंदर भी अम थोड़े-थोड़े सफेद है और सामने एक दरख़्त का दरख़्त नजर आ रहा है ।

सीढ़ियों के दरमियान में एक जगह है जहां पे एक काले रंग की कुर्सी पड़ी हुई है।

दूसरा अभी पीछे है जिसने जामनी रंग की चादर और सफेद सूट पहना हुआ है।